जिसमें उषा का बोर्ड लगा हुआ है।

और इसमें बहुत सारे सामान रखे हुए--

इसके आगे शीशा लगा हुआ--

यहां एक दुकान है यहां बहुत सारा--

यहां पूरा बिल्डिंग रेड --

एक कालीन बिछा हुआ है।

और टेबल पर बोतल रखा हुआ है।